पोज़ मार रहे है और फोटो खींचा रहे है।

ये रायगढ़ का बूढी माई मंदिर है यहाँ पे लोग बहोत --

लेडीज लोग भी खड़े हैं।

फूल भी हैं नीला आसामन है हरे-भरे पेड़ हैं बहोत सारे--

दिखने में इसका मेन गेट बहोत ही सुन्दर है बनाया गया हैं ।

लाइट लगे हैं कलरफुल पर्दे लगे हैं बजरंग बली का फोटो है।

बजरंग बली की मूर्त्ति है।

पता नहीं फोटो क्यों खींच रहे हैं।

लैब दिखने में बहुत सुन्दर दिख रहा है ए बेड में --

ऐसा लग रहा है की यहाँ पे--